किताबे रखी हुई है जूता चप्पल रखी हुए है आस-पास पहाड़ है बहुत सारे पेड़--

यहाँ पे एक झोपड़ी बनी हुई है आस-पास लकड़िया गड़ी हुई है बड़े-बड़े पेड़ है।

बॉलकनी बनी हुई है बॉलकनी यहाँ पर कपड़े सुख रहै है यहाँ आगे एक दीवाल बनी हुई है दीवाल के बाहर--

एक लड़के के हाथ में फोन है एक आदमी पहाड़ के नीचे खड़ा हुआ है एक लड़के ने टोपी लगायी हुई है।